यह एक दवाखाना है दवाखाना दो फ्लोर का बना नीचे दवाखाना है उपर घर बना हुआ है घर मे गॅलेरी बनी हुई खिड़की नज़र आ रही उपर टेरस टॅरेस बना हुआ है। और--

यहा मे बहोत ही बड़ा स्कूल नज़ नज़र आ रहा है स्कूल दो बिल्डिंग का बना हुआ है स्कूल कलर सफेद है इसे बहोत सारी खिड़की नज़र आ रही एसी भी लगा हुआ नज़र आ रहा है और यहा का ग्राउंड काफी बड़ा है।

यहा पे हमे एक दवाखाना नज़र आ रहा है बाहर अ एक प्लस का सिमबॉल बना हुआ है और काच का यहा पे खिडकिया डोर बना हुआ है अंदर एक टेबल रखा टेबल पे एक आदमी बैठ हुआ नज़र आ सामने एक टीवी लगी हुई है।

यहाँ पे हमे दो मकान के घर नज़र आ रहे है और घर के अंदर एक आदमी अंदर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है बाहर एक बहुत ही बड़ा सा बांबू लगा हुआ है जिसपे लाइट लगी हुई है और उपर एक छत जैसा बना हुआ है खिडकी नज़र आ रही है।

और यहा पे बहुत सारे फोटो फ्रेम दीवालो पे लगे हुए है और एक उपर अ लॅम्प लगा हुआ है जो बहुत ही प्यारा जलता हुआ नज़र आ रहा उपर बोर्ड लगा हुआ है दुकान का।

यहा एक बहोत ही बड़ा रोड नज़र आ रहा है रोड दोनों साईडसे एक तरफ से गाड़ी आ रही है और एक तरफ से जा रही है और यहा पे बिच्छों बिच्छ डिवायडर बना हुआ है और बहुत सारे खंबे लगे जिसमे लाईट्स जलती हुई दिख रही है।

यहा पे एक पीले कलर का अ लाल कलर गेट लगा हुआ जिसे हम अंदर जाते है तो दूसरा फिरसे गेट लगा हुआ है और एक बहुत बड़ा खंबा लगा है जिसमे लाइट लगी हुई है एक छोटासा घर बना हुआ नज़र आ रहा है और बहोत सारे पिछे पेड़ पौधे है।

यहा पे कुछ आदमी हमे नज़र आ रहे है यहा पे फोर व्हिलर भी पार्क मे लगी हुई है एक छोटासा टेंट बना हुआ है टेंट बहुत ही कलर फुल नज़र आ रहा है जो बहोत ही अच्छा लगा ग्राउंड काफी बड़ा है।